और और बहुत सारी शेटर लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं।

मैट बिछा हुआ है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है बहोत सारे पंखे लगे हुए--

ये एक बहोत बड़ी जिम है इसके अंदर--

लाइट के खंभे लगे हुए हैं लाइट के तार दिख रहे हैं।

नाव में खाली डब्बे रखे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ी रेडी है इसके ऊपर--

लोहे की मेज रखी हुई है। लाइट का बोर्ड रखा हुआ है।

बहुत सारे पंखे लगे हुए हैंज़ लाइट लगी हुए हैं कांच का शीशा लगा हुआ है।